एक रोड है जिसपे ऑटो रिक्सा चल रहें हैं बाइक्स है।

मैकेनिक भी और ये बाइक अभी भी खड़ा हुआ है।

और एक स्कूटी खडी हुई है।

यहाँ एक राकेट रखा हुआ है फोग है।

दो लड़के अंदर की ओर जा रहे हैं।

बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

और उत्सव महल एक है इसके बाहर ऊपर लाइटे लगी हैं।

शैंपू टाइड कोलगेट और खाने का सामान आटा ये सब रखा हुआ है।

नीचे मैट बिछी हुई है उनके।

और साइड में जो है वो पेड़ वैगरह लगे हुए हैं।

पानी की बोटल और प्लेट्स वगेरा रखी हुई है।

ये एक अअअ भट्टी है। उसके अंदर कोयले वगेरा डाल रहे है।

आ आई लव गया पोस्टर लगा हुआ है स्वच्छ गया सुंदर गया।

इमरजेंसी एग्जिट एंड --

और एक वाइट कलर का घर है जो की --